ये लेग पीस मुर्गे का है जिसे लोग काटकर बनाते है और इसे खाते है बहुत स्वदिस्ट होता है।

मस्जिद में सिर्फ आदमी लोग ही अल्लाह को याद करते हैं और नमाज़ पड़ते है पहले अज़ान होती है उसके बाद लोग धीरे-धीरे आना शुरू करते है।

यह एक छोटी सी शॉप है जिसका नाम फैशन हाउस है यहाँ पे लड़को का आदमियों लोग का कपड़ा मिलता है जैसे की पैंट शर्ट टी-शर्ट वैगरा --

ये तस्वीर एक मूर्ति की है जो की यहां पे भगवान के मुर्तियां अंदर रखी होती है लोग आकर उनकी पूजा करते है।

यहाँ पे एक टेब टेबल रखी हुई है और उसके किनारे किनारे सोफा है टेबल के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर पोट है।